यह एक गेट है ग्रीन कलर का।

उसपे एक पंखा लगा हुआ है।

जिसमे अलमारी बनी हुई है बहुत सारी।

ये एक खूब बड़ा सा मैदान है।

इसमें हरि हरि घासें निकली हुई हैं खूब ढेर सारी।

इसमें झंडा लगा हुआ है।

एक बोट दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की उसमें कुछ लोग बैठें हुए हैं।

एक ब्लैक कलर का पत्थर लगा हुआ बैनर जैसा--

तार के पास एक रेड कलर का पेंट हुआ है नीचे नीचे।

खंभे के ऊपर एक बैनर लगा हुआ है जिसमें मिर्ची बनी हुई है।

ये एक शॉप है जिसमें जमीन पे टाइल्स बिछी हुई है।

केक शॉप है जिसमे जमीन पे टाइल्स बिछे हुए हैं।

बहुत सारे छड़ दिखाई दे रहे हैं जिसमें कप लगी हुई है।

रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं एक सोफा व्हाइट कलर का रखा हुआ है।

जूता रेड कलर का और चारो तरफ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

पात्रे बने है छोटे छोटे।

ये एक बड़ा सा गेट है।

और गोल गोल जाल है बहुत सारे।

दोनों तरफ रेलिंग लगी है।

टेबल रखे है जिस पे बहुत सारी चीजें रखी हैं।

उसके पीछे अह छोटी छोटी अलमारी हैं कांच की उस पर डब्बे रखें हुए हैं।

टोपी लगाए हुए ऑरेंज कलर का कपड़ा पहने हुए--

और एक घर दिखाई दे रहा है वाइट कलर का।

ब्लू कलर का दरवाजा है।

बहोत सारे कुर्सियां हैं जिसमें बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।